ये रिक्शा चालक भी खड़ा हुआ है और यह रिक्शा इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होकर चलता है।

यह एक दवा खाने का फोटो दिख रहा है आपको। दवाखाना मीन्स क्लिनिक का फ़ो फोटो है।

जिसमें एटीएम लोग पैसे निकालने के लिए यूस करते हैं और बैंक में लोग पैसे जमा करते हैं।

पेन पेंसिल भी रक्खी हुई हैं। बहोत ही अच्छी शॉप बड़ी शॉप है।

बॉय कटिंग करवा रहा है और मिरर लगा हुआ है बहोत ही अच्छी कटिंग करवा रहा है।

ओ कुछ प्लाट खाली दिख रहे हैं। उस प्लाट में छोटे-छोटे घास उगी हुई हैं। बहोत ही सुंदर दिख रहा है।

फोटो है। जिसमें मिरर लगे हुए हैं। चेयर्स रखी हुई है और चेयर पर एक लड़की बैठी हुई है जोकि अपनी हेयर कट करवा रही है।